सामने कुछ दुकाना है दुकान है।

साथ में हरी चटनी भी रखी हुई है।

पीछे काले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी हरी मिर्चें रखी हुई हैं उसके पास कुछ और भी सामान पड़ा है।